डेक वगैरा रखे हैं पेज रखे हैं ऊपर पंखे चल रहे हैं।

एक फंक्शन है जिसमें ब्ल्यू और पिंक कलर के पर्दे उसके साथ फूलों की माला है ऊपर बिल्डिंग फूलों की माला है।

बहुत सारी लड़ियां लग रही हैं तार जा रहे हैं रात का मौसम है।

जा रही सी दिखाई दे रही जिसके अंदर बहोत सारे आइसक्रीम वगैरा चॉकलेट वगैरह डिब्बे में--

लाइट है खंभे वाली बहुत सारे चप्पल निकाल रखी है।

एक आदमी खडा बहुत सारे डिबे हैं एक टंकी है रेत सा गंदगी सी का इलाका दिख--

बाॅक्सेस में बहोत सारे कपड़े कंबल और चद्दर वगैरह रखे हुए पैकिंग में--

खेल रहे हैं दो बच्चे बैठे हैं एक बच्चा चल रहा है गाड़ी है झंडा है।

कार दिखाई दे रहा है गाड़ी के अंदर--

पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं रंग बिरंगे लाल हरे और सफेद रंग का फूल है रात में--

शादी की तैयारी होती है बहु बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं बहोत सारे तार जा रहे हैं देक्ति पड़ी शटर बंद हे एक दुकान का।

पेंट हो रहा ये दो आदमी आदमी रोड पक्का है।

और इसके अंदर और भी चीज हैं जो ऑयल वगैरा एक एक शैंपू है।